ये एक ऑफिस हैं ऑफिस में कुछ मशीनस वगैरह रखी हुई हैं जैसे फोटोकॉपीज की--

साइड में ही एक डस्टबीन भी रखा हुआ हैं।

पेट्रोल की जो मशीन होती हैं वो दिखाई दे रही हैं कुछ लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं।

इस पिक्चर में जिम की फोटो दिखाई गई हैं।

जो कि अभी-अभी ए_टी_एम से बाहर निकला हैं ए_टी_एम से अपन पैसे भी निकाल सकते हैं।

और ये ए_टी_एम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हैं जो काफी अच्छी ब्रांच हैं।

इस पिक्चर में कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं।

उसके आगे एक वाइट कलर की बिल्डिंग बनी हुई हैं जो काफी बहुत प्यारी लग रही हैं कुछ कपड़े भी सूख रहे हैं बहार--

ये एक जंगल की पिक्चर हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं दो हिरण हैं।

जो एक मैकेनिक की शॉप पर है उसके साइड में टायर्स पड़े हैं।

ये एक जिम हैं जिसमें एक बॉयज यानी एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा हैं।

इसमें एक लंबा सा खजूर का या नारियल का पेड़ हैं।

इस पिक्चर में कुछ बच्चे डांस क्लासेस ले रहे हैं कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं जिसमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं।

इस पिक्चर में कुछ कैंडल है मोमबत्ती जो जल रही हैं।

अ हल्की टाइप फ्रोजी टाइप कलर की है वहां वाइट कलर का एसी भी लगा हुआ है और काफी खूबसूरत डेकोरेशन है।

ये एक श्रीराम सुपर मार्केट है जहाँ पे घर का सामान मिलता है।

जहाँ पे एक बच्ची सीढ़ी से उतर रही है।

उसी के साइड में कुछ पेड़ गमले भी रखे हुए हैं दो बॉयज हैं।

कुछ बच्चे अपना सामान लेने आए हुए हैं।

यहाँ पे लेडीज अपना वर्कआउट करने आती हैं।

हेल्थ बनाने आती हैं और इसके साइड में ही एक खंबा लगा हुआ है लाइट का--

यहाँ पे सब अपना हाथ जोड़ के पूजा कर रहे--

यहाँ पे कुछ ब्रूज लगे हुए हैं ब्लू --

फूटपाथ पे जो फिश काट रहे हैं कुछ लोग फिश लेने आए हैं।

और एक बड़े से टब में पानी है जिसके अंदर भी फिशेस हैं।